ग्रीन कलर के परदे है वाईट एंड यल्लो कल-वाईट एन्ड पिंक कलर के फुलहै पास में ही एक निम का बड़ा सा पेड़ है।

जिम का कलर रे- ग्रीन व ब्लैक है उसमे ग्रीन कलर का कार्पेट बिछा हुआ है।

अ ट्रेन की पटरियां है जिस पर एक ट्रेन खड़ी है पास मे ही प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म का रंग पिंक ग्रीन वह अ येलो कलर है प्लेटफार्म पर दो बेंचेस लगी हुई है।

दो टीन टगारिया रखी है एक पाइप जाते हुए दिखाई दे रहा है बड़े बड़े पिलर्स बने है और आह झरियों से बनते हुए कुछ नजर आ रहा है पास में पावडा पडा हुआ है मैटेरियल --